पानी के अंदर आधी डूबी हुई छठ माता की पूजा कर रही है और कुछ पु--

यह फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के दुकान की फोटो है इसमें कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान --

इसमें अनेक प्रकार के कपड़े रखे हुए हैं तथा तीन चार ड्रेसज जो लेडीज ड्रेसज लग रही हैं।

यह किसी मंदिर के बाहर की फोटो नजर आ रही है जिसमें श्रद्धालु --

मंदिर के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं और इस मंदिर के बाहर एक बहुत लंबा बरामदा नजर आ रहा है इसमें --

यह टेनिस खेल का इनडोर स्टेडियम नजर आ रहा है जिसमें चार खिलाड़ी --

बहुत अच्छे गेंद दिखाई दे रहे हैं और इस लौ स्टेडियम में लाइटें लगी हुई है और नेट पे ये लोग जूते पहने हुए खेल रहे हैं।

सा साथ में ईकड़ और पत्थरों से सु सुंदर से ऊंचाई की हुई है।

इसमें साइड में लोग घूमते नजर आ रहे हैं।

सारी गाड़ियां खड़ी हैं और लोग आ जा रहे हैं और साइड में कुछ कलरफुल डिजाइन लगाई हुई हैं कपड़े के द्वारा और एक अंदर --

कुछ बच्चे और बच्चियां स्कूल के अंदर जाती दिखाई दे रही हैं उस स्कूल में बहुत अच्छा --

यह किसी बस डिपो की फोटो नजर आ रही है इसमें साइड में एक रोडवेज बस नजर आ रही है और बस डिपो या बस स्टैंड में --

चेयरों पर और कुछ लोग खड़े हैं ये रात की फोटो लग रही है और इस फोटो में लाइटें दिखाई दे रही है।

यह किसी पार्क की फोटो नजर आ रही है इसमें चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है।

यह फोटो किसी बड़े शोरूम की नजर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की जिसमें कुलर टी_वी पंखे --

तीन लोग दिखाई दे रहे हैं और एक नाव दिखाई दे रही है जो किनारे से नदी के अंदर जाने की तैयारी कर रही है।

और इस ऑफिस का बहुत ही अच्छे तरीके से--

बोरियों की चादर रखी हुई है जिसे धूप कम लगती है और ये एक बहुत ही अच्छी है।